घूमने के लिए आते है चर्च में प्रे करते है।

यह हमारे इलाका का एक सरकारी दफ्तर है। ये दफ्तर बहुत ही बड़ा है ये दफ्तर--

सेल किया जाता है टोटो को चार्ज भी किया जाता है।

यहाँ पर एक सड़क है सड़क के दोनों किनारे पे मछली --

होता है पुरूष-महिला --

रूम का भाड़ा पाँच से दस हज़ार रुपया है।

पर नाईट यहाँ पर ऑनलाइन में होटल का --

देखते है यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है।

वहाँ का लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग करता है।

ए हमारे इलाका का एक फ्रूट्स का मार्किट है ए फ्रूट का मार्किट बहुत ही बड़ा है।

जूते के शोरूम है ए जूता का शोरूम बहुत ही बड़ा है यहाँ पर बीस लोग काम करता है। यहाँ पर--

ए हमारा इलाका का एक बुक का स्टाल है। ए स्टाल बोहोत ही बड़ा है। एक लोग ये दूकान संभालता है।

सामान खरीदता है पर डे इस दूकान से।

ए हमारे इलाका का एक सड़क है। इस सड़क के किनारे पर बड़े-बड़े बिल्डिंग है। यहाँ पर लोग फ्लैट्स में रेहेता है।

ओपन स्काई में खाना सर्वे किया जाता है। यहाँ पे बीस लोग काम करता है।

यहाँ पर बोहोत अच्छे से खाना सर्वे किया जाता है। यहाँ पर टी कॉफी स्नैक --

यहाँ पर हर वक़्त इलाका का लोग गुजरता है कार गुजरता है।

न्यूली कलर किया गया है मंदिर के चारों तरफ से सजाया गया है।

यहाँ पर एक फंक्शन चल रहा है इसलिए इस जगह को बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया है।

योगासन इंस्टिट्यूट है यहाँ पर पचास से ज्यादा लोग --

एक साथ योगासन करता है ओपन ग्राउंड में यहाँ पर चारो तरफ ढेर सारे --

यहाँ पर मस्जिद के बिल में से बहुत अच्छे से सजा --

इस मस्जिद में एक साथ हजारों लोग नमाज पढता है।

पढ़ने का सामान खरीदता है |

एरिया बहोत ही बड़ा है इस पार्किंग एरिया के चारों तरफ मुझे --

इस जगह का नेचुरल व्यू बहुत ही खूबसूरत है।

बोहोत जल्द ये काम कम्पलीट हो जायगा यह पर एक बोहोत बड़ा ऊचा बिल्डिंग बन जायेगा ।

ये हमरे इलाका का एक बस्ती एरिया है।

ऐ हमारे इलाके का एक पार्क है एक --

मंदिर के बाहार एक सुंदर सा पावोनि भी बनाये गए है और वहाँ पर भी सुंदर सा लाइटिंग किया गया है।

ये हमारे इलाका का एक --

बाइक का शोरूम है। ये बाइक का शोरूम बहुत ही बड़ा है। इस बाइक का शोरूम के अंदर का डेकोरेशन बहुत ही--

ये हमारे इलाका का एक ज़ू है ऐ ज़ू बहुत ही बड़ा है यहाँ पर ढेर सारे जंगली जानवर को --

हिरण एक पेड़-पौधे खाता है।

यह हमारे इलाका का एक जिम सेंटर है। ए जिम सेंटर बोहोत ही बड़ा है। यहाँ पर जिम करने के लिए ढेर सारे जिम का इंस्ट्रूमेंट है।

ए हमारे इलाका का एक बुक का स्टाल है ए बुक का स्टाल सड़क के किनारे पे है।

इस दुकान में एक लोग दुकान समालता है।